आस पास बहोत से बच्चे व औरतें खड़ी हुई दिख रही हैं।

फर्नीचर को चॉकलेटी रंग से पेंट किया हुआ दिख रहा है।

रेलवे स्टेशन के ऊपर कुछ लाइटें लगी हुई दिख रही हैं।

एक कमरा दिख रहा है जो की वाइट कलर से पेंट किया गया है।